इसके आगे दो बच्चे भी नजर आ रहे हैं और कुछ बाइकें भी खड़ी हुई हैं। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया गया है। इसका नाम डिपार्टमेंट डेरी पार्लर भी है।

चीजें भी रखी गई हैं जो इस तस्वीर को अच्छा बनाती हैं।

इसमें बोहोत सारी मशीन भी लगी हुई है जो कार को अच्छी तरह से ठीक कर सकती हैं। यह पिक्चर बोहोत ही अच्छी और सुंदर है ।

यह तस्वीर एक जिम की है जिसमें बहुत सारे दौड़ने वाले मशीन रखी गई है जिससे व्यक्ति दौड़ कर अपनी अच्छी इम्यूनिटी और शरीर को सुडौल बन सकता है ।